इन्होंने शोल्डर पर हाथ रखे हुए हैं इनके--

इस शॉप में दो केक ऊपर--

इसमें काफी गमले पौधे--

ये कैफे की तस्वीर है।

चर्च के सामने क्रॉस बना हुआ है नीचे--

ये ऑप्टिकल्स की शॉप है।

घोड़े ने ब्लू कलर की शर्ट पेहनी हुए हैं।

इन सब ने साड़ी पहनी हुई हैं।

इसमें काफी सारे टेबल चेयर्स लगे हुए हैं।

स्टेज पर एक बच्चा डांस कर रहा है।

ये नहर की तस्वीर है।

ये कॉन्टिनेंटल ढाबा है।